बहुत सारे लोग ऊपर खड़े उन्हें देख रहे है ।

पांच बच्चे दिखाई दे रहे है जिसमे से तीन लड़किये चार लड़किये और एक लड़का दिखाई दे रहा है।

और बहुत सारे लोग है यहाँ पे जो अपना-अपना खाना खा रहे है ।

हर चीज दिक मिलती है जो ग्राहकों के लिए --

और दो लोग जो उनकी दाढ़ी बना रहे है जो दाढ़ी बना रहे है। उन्होंने फिरोजी कलर की शर्ट पहनी हुई है।

छोटे-छोटे पेड़ लगे हुए है और घरो के पीछे बड़े-बड़े पेड़ लगे हुए है ।

फूल लगे हुए हैं और एक कथई कलर का उसमें एक शंख डला हुआ है एक कमल का फूल है एक गेंद --

मेहँदी और जो एक सामने कोल्ड्रिंक की बोटल रखी हुई है वो ऑरेंज कलर की है और पानी की बोटल सफेद --

सामने हमें एक बिजली घर की तस्वीर नजर आ रही है जिसके ऊपर एक नीले कलर का बोर्ड लगा हुआ है उस बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ है पावर सबस्टेशन --

और जो ग्रीन कलर की लड़की है साड़ी पहनी हुई है उसके हाथ में एक धनुष है और अपने नित्य का प्रदर्शन कर रही हैं। पीछे गुब्बारे --

चार खिड़किए सामने नजर आ रही है जिनका कलर काला है।